और आज़ू बाज़ू नखनउ से अ य आज़ नखनउ से प्रोटेक्ट किये परसो मारा जायेगा--

और अंधेरा अंधेरा दिख रहा है यहां पर रोशनी नहीं दिख रही आगे रोशनी दिख रही है।

जो छोटी सी दुकान दिखती है यहां पर छोटीयों सी मेडिकल दिख रही है ये सामान अंदर बहुत सारा दिख रहा है।

चॉकलेट भी रखे शुगर के डब्बे भी रखे हुए दिख रहे हैं अंदर टानिका दिख रहे हैं और उपर फ्रेम में दिख रहा है।

छोटी सी दुकान दिख रही है बच्चों खिलौने के लिए दुकान दिख रही है फुग्गे खिलौने टेडी बियर बहोत सारे खिलौने दिख रहे हैं बच्चों के --

और ऊपर बाहर मशीनें भी दिख रही है पीछे दिखे हैं रखे गए पीछे दिवार के उपर कोई बोर्ड भी लगाया गया है।

शक्तिमान का दिख रहा है तीन पुतले शायद किसके हैं कि पीछे बैनर लगा गया है अच्छा खासा दिख रहा है खूबसूरत दिख रहा है।

और वो काउंटर भी अच्छा सा दिख रहा है और लाइटिंग भी दिख रही है ऊपर बहुत अच्छी खूबसूरत निचे टाइल्स बिछाया गया है।

बैठने के लिए छोटी सी टेबल भी दिख रही है खम्बे है और वो लकड़ी के बमक दिख रहा है।

छोटा सा पेड़ पौधे का दुकान दिख रहा है और बहुत सारा सामान दिख रहा है कठोरा गिलासा वो सब का दुकान दिख रहा है।

कोई डॉक्टर को ऑफिस दिख रहा है यहां पर तीन लोग ठहरे हुए हैं एक लोग अंदर काउंटर के अंदर बैठा हुआ है दोनों बाहर ठैहरे --

काउंटर काले का रंग का दिख रहा है अ दीवार के ऊपर लगाया गया है।

सुबह सुबह का टाइम दिख रहा है आज़ू बाज़ू जाड़ा दिख रहे वहां पीछे और सामने घांस भी दिख रही है और बहुत सारा बरा सा मैदान दिख रहा है ये।

एक बेकरी दिख रही है मिठाई की और काउंटर के ऊपर कुछ खाने के लिए चीज़ आम दिख रहे है।

ये किसका खेत दिख रहा है और इस खेत में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और तीन लोग यहां पर आकर देख रहे हैं एक आदमी जा रहा है दो आदमी ठहरें हुए --

अच्छा खासा ज़मीन दिख रही है कालिया रंग की।

बहुत सारा सामान रखा हुआ दिख रहा है और एक अलमारी भी दिख रही है अंदर अंदर कुछ पेपर्स भी दिख रहा है।

और एक वो छोटी सी स्कूटी भी दिख रही है बाहर छोटे छोटे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

बारात ठहरें हैं और सीढ़ियां में दिख रहे है दो बाहर से--

बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है यहां पर और ओपन मैदान के जमीन के उपर पत्थर बिछाए गए हैं पत्थर के घांस लगी हुई है और लेडीज़ भी यहां से जा रही हैं।

किसी छोटी किसी की ऑफिस दिखती है यहां पर ए_सी अंदर छोटी सी ऑफिस के बाहर एक आदमी खड़ा होकर फोटो खींच रहा है और बाज़ू में बैठने के लिए कुर्सियां भी दिख रहे हैं।

लंबी चेयर भी दिख रही है उप्पर लाइटिंग भी दिख रही है।

कुछ झांड़ा भी दिख रहे हैं और कुछ पैपा भी दिख रहे हैं।

बैठने के लिए कट्टा भी दिख रहा है झाड़ा दिख रहे हैं बहुत सारे--

देखो ये सीन में पूल दिख रहा है छोटा सा या गार्डन दिख रहा है पीछे बहुत बहुत बड़े बड़े झाड़ा दिख रहे हैं।

ये किसी छोटी सी मोटर्स की दुकान दिखती है यहां पर अगर मोटर खरीदते हैं।

सुबह वॉशिंग करते हैं उनका बाइक को धोते हैं और आज़ू बाज़ू दिख रहे हैं खंबा भी दिख रहा है पीछे से--

खम्बे के बाहर लम्बे लम्बे दिख रहे हैं और कारखाने के बहार में डाले हुए हैं।

बाहर केला लगा दिख अंदर शेप वही दिख रहा है बाहर--

और वो आज़ू बाज़ू बहुत बड़े बड़े झाड़ दिख रहे हैं उधर आगे शायद--

एक बड़ी सी मंदिर दिख रही है शायद यह मंदिर का जलसा दिख रहा है मंदिर ऊपर लाइतींग डाली गई डाली गई है और मंदिर के बाहर एक आदमी ठहरा हुआ है और टेपा में दिख रहे हैं अंदर।

मंदिर के बाहर कुछ लोगा में ठहरे हुए दिख रहे हैं गेट के बाहैर हूँ और सामने मंदिर का बड़ा सा झाड़ भी दिख रहा है मंदिर के आजु बाजु झाड़ा भी दिख रहे हैं।

सामने दीवाल के ऊपर कार की फोटो लगाई गई हैऔर बैठने के लिए सोफा भी दिख रहा है और कॉन्ट्रे पर दो चार बोतलें भी दिख रहे हैं।

और बड़ा सा दिख रहा है लंबा सा दिख रहा है बाज़ू में पत्थर दिख रहा है बाज़ू में बोर्ड भी लगाया हुआ दिख रहा।

सामने बड़ा है और सामने बड़ा सा मैदान दिख रहा है और सामने बड़ा सा झाड़ भी दिख रहा है।

पीछे बड़े बड़े झाड़ा भी दिख रहे हैं और यहाँ पर एयरपोर्ट लँडिंग दिख रहा है कुर्सियां भी दिख रहे है बैठने के लिए।

सामने दो बड़े बड़े झाड़ें में दिख रहे हैं और सामने मेन रोड दिख रही है और सामने से एक ऑटो भी जा रहा है लेडीज़ कुछ लोग ठहरे हुए भी है कुछ लोग बैठे हुए भी हैं।

एक छोटा सा मंडप दिखता है और पर गुलदस्ता भी दिख रहा है और नीचे चार भी बिछाई गई है और अच्छा सा डेकोरेशन किया गया--